और कमल पिंक कलर में से है और पत्ती हरी है और बहोत सुंदर दिख रहा है बहोत सारे कलम कमल लगे हुए है यहाँ पर।

और यहाँ पर सब वाइट वाइट ही है। पूरी दिवालें वाइट हैं। बेड वाइट है।

और बहोत से लोग उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई जा रहा है। कोई खेल रहा है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। राईट साइड में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे झूले लगे हुए हैं और एक बड़ा सा पेड़ --

और बहोत ही पानी दिख रहा है और पेड़-पौधे भी बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं लेकिन पेड़-पौधे बहोत दूर-दूर हैं। कोई-कोई पेड़ छोटे हैं।

बहोत सारे खम्बे है जोकि बहोत ही पुराने है और ब्लैक कलर में का पूरा मंदिर है जोकि देखने में बहोत ही --